ओर ये इनके रिश्तेदार है ये यल्लो और वाईट कलर के कुरता और पेंजामा पहने हुए है बहुत ही खूबसूरत तरीके से डेकोरेशन किया गया हेशादी का|

मंदिर लग रहा है जो ओरेज कलर का है बहार ही पंडाल बना हुआ है जो काले रंग का है इधर बहोत सारे व्यक्ति खड़े है वहा ओटो खड़ा है रिक्शा खड़ी है बाइक वाले इंशान लोग है कुछ बन्दे खड़े है।